माइक बाइक भी है यह गरबा कर रहे हैं वार्षिक समारोह में आए हैं जजमान के लिए--

--और यहाँ पर बिजली का खंबा भी लगा हुआ है वहाँ पर पूरे तार वार भी दिख रहे हैं देखो वहाँ उसके--उस पार दो-तीन और लगा हैउसके उस पार एक पानी टैंकर है और पानी का टैंकर उस पार बहोत सारी बिल्डिंग भी दिख रहे है।